किड्स को खेलने के लिए चाइल्ड को खेलने के लिए छोटी-छोटी --

सन की तो यहाँ पे सनसेट हो रहा है सनसेट दिखता हुआ नजर आ रहा है ।

तो वो कार्डबोर्ड से --

यहाँ पे एक मंदिर है मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है शिव पार्वती जी भी हैं ।

बाइक जिसकी बाइक है वो नहीं दिख रहा है खाली बाइक दिख रही है पहाड़ी दिख रही है यहाँ से ।

एनवायरनमेंट भी यहां का अच्छा है।